यह कोई पतंजलि चिकित्सालय एवं स्टोर है।

ये गेट मे ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज के गुब्बारे से सजाया गया है।

दीवाल का कलर येलो और रेड है अंदर में घर है उसका कलर व्हाइट है।

दुर मे भी बहोत सारे आदमी है।

और गेट के पास सीसा लगा हुआ है।

में एक बहुत ही सुंदर झुमर लगा हुआ है।

और बहुत सारी औरत है जो फूल तोड़ रहे है।

और दूर में बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पर बहुत सारे तलवार है जो वाइट कलर के कपडे के ऊपर में रखा हुआ है ऊपर में बहुत सारे लाइट् लगे हुए है।

बहुत सारे तिरंगे झंडे हैं।

गे में एक ब्लैक कलर का टेबल है।

यह एक होटल है जहाँ पर दो औरत और दो मर्द हैं।

गी में बहोत सारे टेबल और कुर्सी है एक टेबल के ऊपर में एक जग और दो गिलास है।

यहां पर बहोत सारे आदमी औरत बैठे हुए हैं।

ये सब के पीछे में बहोत सारे घर है। घर के पीछे में बहोत सारा पेड़ है।

जहां पर बहुत बड़ा गेट लगा हुआ हैं।

यह कोई कपड़े का दुकान है जहां पर बहुत सारे कपड़े हैं।

यह एक दुकान है जहां पर बहोत सारे सामान है आगे मे कुछ चिप्स के पैकेट हैं।

बहुत सारे आदमी यहां पर आए हुवे हैं।

यह एक झरना है जहां पर बहुत सारे लोग आये हैं यहां पर बहोत बड़े बड़े पत्थल है।